यह एक हॉस्पिटल का रूम है।

और जो मैटो पर बैठे हुए है।

सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

उसमें कुछ परांठे रखे हुए हैं।

ये एक व्हाइट कलर की चादर दिखाई दे रही है।

सामने दो लड़के दिखाई दे रहे हैं।

और उस पर वाइट कलर से कुछ शब्द लिखे गए हैं।

और उसने उसके बगल में एक रिक्शा खड़ी हुई है।

जीसमें सामने रेल की पटरी दिखाई दे रही है।

सामने दो लड़के खड़े हुए हैं।

बराबर में एक कप रखा हुआ है।

और उसका गेट ब्लू कलर का है।

जीसका दरवाजा कांच का है।

जैसे ऑक्टस के हो सामने व्हाइट कलर किया गया है।

पीछे एक पिंक कलर की बॉटल रखी हुई है।